जहां एक लोहे की पाइप दिखाई दे रही है।

इधर एक सोफा भी नजर आ रहा है उसके आगे एक मेज है जिसपर पीले रंग के फ्लोवर्स रखे हुए हैं।

इधर बस हरे भरे पत्ते दिखाइ दे रहे है।

सुबह का दृश्य प्रतीत होता है।

यह तस्वीर एक शादी की नजर आ रही है।

यहां बहुत सारा सामान रखा दिखाई दे रहा है।

जहां ऊपर बहुत सारे डब्बे दिखाई दे रहीं--।

यहां कोल्ड कॉफी और बहुत सारी चीजे दिखाई दे रही है इस दुकान को कैफे कहा जाता है।

यह तस्वीर एक दुकान की दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक गाड़ी की नजर आ रही है।

येह बस प्राइवेट बस दिखाई दे--

ब्राउन कलर का है रूम के आस पास की दीवारें--

इधर लिखा हुआ है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट --

यह तस्वीर एक झरने की नजर आ रही है।

चढ़ के फिसल के नीचे आता है जिसे लेडर और भी कहते हैं।

ये तस्वीर एक अं रेस्टोरेंट की दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक दुकान की दिखाई दे रही है।

इधर केले की पूजा करते हुए दिखाई दे रहें--

यह तस्वीर एक बकरी के फॉर्म की नजर आ रही है।

इधर कैंची व बहुत सारे सामान रखा हुआ है।

यहां एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी है।

नीचे काले रंग की पैंट है वह पत्थरों को तोड़ने व पैक करने का काम कर र--

यहां एक बड़ा प्रिंटर है जहां बड़े बड़े पोस्टरो को प्रिंट किया जाता है।

और यह गड्ढा खोदने के लिए काम आती है।

दुकान के अंदर बहुत सारा समान दिखाई दे रहा है।

यहां एक लिफ्टिंग वाली कार उस कार को ले जाते हुए दिखाई दे रही है।

यहां एक ट्रक को तोड़ फोड़ कर उसकी मुरम्मत की जा रही है।

यह तस्वीर एक तालाब की दिखाई दे रही है जहां एक व्यक्ति पत्थर के ऊपर बैठा दिखाई दे रहा है।

पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे--